जो पुस्तक के जो मालिक है वो रेड कलर का पेन उनको दे रहे है यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है अलमारी में।

यहाँ कोई पार्क का सीन है जिसमें झूला लगा हुआ है जोकि बड़े छोटे सारे युवक और कुछ बच्चे झूल रहे है कुछ जेन्स है कुछ लेडिस है।

यहाँ पे एक अप्पार्टमेन्ट है जिसमे एस_बी_आई का बैंक है स्टेट बैंक ए_टी_एम है जिसमे बोहत सारे एक लाइने भी लगी हुई है कुछ जेंट्स और कुछ लेडीज है।

यह एक शॉप है जो की बाला दाड़ी इ दुकान का नाम है सैलून है यहाँ पे एक युवक है जो की सीढ़ी के पास खड़ा होके फोटो क्लिक करवा रहे है काफी अच्छा दुकान है।

की इसमे बेंच लगा हुआ है कॉफी कलर का जिसमे बहुत सारा बुक रखे हुए है सरिया हुआ आलमीरा में है यहां पे---

जिन्होंने ब्लैक कलर का जीन्स वाइट जूता और बैगनी कलर का टॉप पेहना है।